एक उजले कलर का सर्ट पेहना हुआ है एक विद्यार्थी लाल कलर का सर्ट पेहना हुआ है।

ये एक गैरेज है मोटरसाइकिल बनाने वाले गैरेज के आगे मे तीन चार बाइक ढेर सारे लगे हुए हैं।

ये किसी घर का बरान्दा है बरान्दा बहोत ही सुंदर लग रहा है।

ये एक होटल लग रहा है होटल के कमरे का है दीवाल में एक चित्र है चित्र में एक आदमी सेफ के तरह खड़ा है।